साफ सुथरा बड़ नै दिखै छै गंदगी छै एक त शर्मा ट्रेवल्स के बस लागल छै

ऐता विवाह होबे वला छई या भौ रहल छै लागई छै स्टेज के काफी निक सजेने छई छै दूटा आर्टिफिशियल वाला जे कागज के फुल होय छै।

एकटा जे छै लड़का बैसल या कोनो समारोह तमारोह में----

एकटा सरस्वती माता के अनोखा प्रतिमा छै जेकरा बुझा रहल छै कि पुरान बोरा स और रस्सी सबसे के बनेने छै तकरा तहि दुआरे काफी प्राचीन लैग रहले--